पास में एक और शॉप दिखाई पड़ रही है उसके ऊपर ए_सी का एक पंखा लगा हुआ है एक साइकिल खड़ी हुई है तीन आदमी दिखाई पड़ रहे हैं।

करते हुए और भी बहोत सारे व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए ग्रीन दुपट्टा डाले हुए हेयरबैंड व्हाइट कलर का लगाए हुए दो चोटियां करे हुए बच्चे खड़े हुए स्टेप कर रहे हैं।

ये एक क्लीनिक दिखाई पड़ रहा जिसमें एक विंडो पे अं एक पर्दा पड़ा हुआ है टॉवल टंगी हुई है एक पंखा लगा हुआ है दीवाल में--